सड़क के ऊपर बस लगी हुई हैं इसमें तीन बस नजर आ रही है कुछ कंडक्टर यहां पर आपस में बात कर रहे हैं एक व्यक्ति ने माक्स लगाया हुआ है पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहां पर दुकाने भी हैं दुकान के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

पानी के अंदर बहुत सारे हरे पत्ते लगे हुए है। इसमें जागी भी है। उपर ग्रीन कलर की भी लगे हुए हैं। सामने की तरफ आसमान नज़र आ रहा है।

रेलिंग में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं कुछ बड़े पेड़ हैं कुछ छोटे पेड़ हैं सामने एक बिल्डिंग है जिस पर ब्लू कलर के कांच लगे हुए इसमें पिलर्स भी बने हुए हैं सामने की तरफ पार्किंग एरिया भी है ऊपर ब्लू कलर के रेड कलर के पाइप हैं।

आर्फ का बाउंड्री वॉल है जो सामने की तरफ इसमें लोहे के रिंग बने हुए हैं जो चश्मा नुमा बना हुआ है इसमें स्वच्छ भारत लिखा हुआ है।

इसकी बाउंड्री बनी हुई है अंदर की तरफ पेड़ लगे हुए हैं जो ग्रीन कलर के हैं इसमें एक व्यक्ति सामने की तरफ खड़ा हुआ है एक हॉर्स बना हुआ है जो मेटल का है पीछे एक बिल्डिंग है।

जिसमें किया मोटर्स लिखा हुआ है दो पेड़ लगे हुए हैं जो बड़े हैं नीचे छोटे-छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं सामने की तरफ एक रास्ता है सामने एक ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है।

एक व्यक्ति चेयर पर बैठा हुआ है पीछे सफेद स्ट्रे स्ट्रेट लाइट जल रही है कुछ व्यक्ति सामने की तरफ देख रहे हैं पीछे बहुत बड़े-बड़े खड़ घर नजर आ रहे हैं जमीन पर सूखा है।

स्टो रखा हुआ हैं स्टो के ऊपर एक कुंडा रखा हुआ है उसके ऊपर एक चम्मच रखा हुआ हैं सामने की तरफ एक रोड ह जिसमें बहुत सारी बाइके खड़ी हुई हैं सामने से कुछ ऑटो बाइक्स वाले लाइट जला कर आ रहैं हैं। एक व्यक्ति का हाथ--

मंदिर का बड़ा सा गेट है सामने की तरफ इसमें गेट बना हुआ है इसमें बहुत सारी कलाकृति बनी हुई है ऊपर की तरफ मूर्तियां बनी हुई है सामने एक गाय बनी हुई है।